दृश्य में हमें रोड दिखाई दे रहा है | जिसपर हमें आती हुई दो भैंस और एक औरत दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें बिजली का बड़ा बड़ा खम्बा भी दिखाई दे रहा है।